चट्टान के पास में हरी भरी पेड़ पौधे लगे हुए हैं चट्टान तक पहुंचाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है।

और कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे है।

घर के चारों ओर हरियाली है।

सड़क पर कुछ ऑटो रिक्शा खड़े हैं और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं।

लोग यहां मिल कर ईटों का निर्माण कर रहे हैं।

यह तस्वीर को देखकर यह पता चलता है की यह तस्वीर किसी सब्जी बजार की है।

व्यक्ति मजबूत और स्वस्थ दिखाई दे रहा है।

छोटी सी सब्जी की दुकान है।

जिस पर एक स्कूटी की तस्वीर और कुछ लिखा दिखाई दे रहा है।